सामने मैं देख पा रही हूं कि बहुत बड़ा तालाब है और तालाब के अंदर बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं और--

सामने मैं देख पा रही हूं कि बहुत बड़ा दुकान है और दुकान में बहुत सारे--

और यहां पे मेकअप का सामान बहुत सारा है और कांच की भी चूड़ियां हैं और कंगन भी हैं।

बहुत ही सुंदर लग रहा है और बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहे हैं सामने बड़े-बड़े घर भी दिख रहे हैं और बहुत सारे--

मोबाइल की शॉप है जहाँ पे बहुत सारी मोबाइलें बेंची जा रही हैं बहुत तरह-तरह के अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग मॉडल की।

कुछ लोग हैं जो हाथों में मसाले लिए हैं और झूमर लिए हैं जिससे वो नाच-नाच के--

बहुत बड़ी नदी है और नदी के अंदर दो नाव हैं।

और यहां फोटो बहुत दूर से ली गई हैं और काफी लड़के हैं यहाँ पे।

सीढ़ियों पर भी कुछ लोग खड़े हैं जो कि अ एक लड़की है जो शर्ट पहनी हुई है ठण्ड--

और इसे प्लेन कर रहे हैं और अ बगल में आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

और बहुत बड़े नीम का भी पेड़ है सटा हुआ है और दूर दूर तक खेत नजर--

और ऊपर पंखे भी बहुत सारे लगे हुए हैं और बहुत ही साफ सुथरी है नीचे और--

बहुत बड़ा ग्राउंड है यहां क्रिकेट खेल रहे हैं काफी लोग देख रहे हैं किनारे बैठ के।

और आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं और इस पेड़ को चारों तरफ घेर दिया गया है जाली लगा के।

और जो बगल में सटे हुए घर दिख रहे हैं वो भी काफी बड़े-बड़े हैं।

लेकिन बिस्किट और यहां पे शैंपू भी रखे हुए हैं।

और बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है बाहर का ये फोटो है और ये बहुत बड़ा कोचिंग है।

और ऊपर खिड़कियां भी दिख रही है जो कि और गेट भी सामने है जो कि खुला हुआ है।

सामने बहुत सारे स्टैचू बने हैं जो कि जानवर के हैं शेर के हैं बाघ के हैं और दो--

और उसने दुकान में बहुत सारी अ अलग-अलग अ सामानें औजारें रखे हुए हैं।